ब-बहुत सारे हमे डब्बे दिख रहे है जिनके अंदर पेन पेंसिल बहुत सारे रखे हुए है डिफ़्रेंट डिफ़्रेंट टाइप्स के और बहुत सारे स्टेशनरी का समान हमे दिख रहा है और व्हाइट कलर का--

पीछे हमे तीन टॉवल नजर आ रही है एक मटका नजर आ रहा है एक पानी का कैन नजर आ रहा है एक हमे ब्लू कलर की बॉटल्स रखी हुई रिसिप्शन --

ग्रीन कलर और ऑरेंज कलर की एक बिल्डिंग दिख रही है और काफी सारी बाइक और सयकिल्स दिख रही है और धुप दिख ज्यादा हो रही है साइड में हमें एक परसन दिख रहा है।

इस फोटो में हमें एक दुकान दिख रही है जिसमें एक पंखा दिख रहा है दो चेयर्स दिख रही है मिरर्स दिख रहे है स्प्रे दिख रहा है मशीनें दिख रही हैं।

कुछ लोग हमे दिख रहे है बहुत सारी नांव दिख रही है और कुछ झण्डे दिख रहे है और काफी दुराई पे काफी सारी चीजें हमें नज़र आ रही है आसमान दिख रहा है।

टिन दिख रही है ग्रीन कलर की येल्लो कलर की रेड कलर की वाइट कलर की काफी सारे पेड़ पौधे दिख रहे है एक पहाड़ दिख रहा है एक टावर दिख रहा हैदो पत्थर दिख रहे है।

इस फोटो में हमे एक छोटी रिवर दिख रही है और दो नाँव दिख रही है एक छोटा सा ब्रिज दिख रहा है एक गेट लगा दिख रहा है बहुत सारी इसमें हमें घास दिख रही है।

काफी सारे घाँस नजर आ रहे हैं सामने पहाड़ दिख रहा हैं बादल दिख रहे हैं ।

शटर्स खुद दो शटर्स खुली हुई है और एक और खुली हुई है स्टेयर्स दिख रही है एक झंडा दिख रहा है टावर्स दिख रहे है पेड़ दिख रा --